समान खरीदने के लिए और दुकानों में काफी सारी लाइट लगी हुई हैं।

इस चित्र में सामने हमें रोड पे बहोत सारी औरतें और बच्चे खड़े हुए दिख रहे हैं और सामने पुल है पुल के नीचे से बहुत सारे वाहन आ जा रहे हैं।

और सामने एक घर बना हुआ है जिस पे गुलाबी रंग का पेंट किया गया है पीछे से खिड़की दिख रही है और एक बड़ा पेड़ भी खड़ा हुआ है।

आ रही हैं और उसके पीछे--

इस चित्र में सामने हमें एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें--

और उसके ऊपर लिखा हुआ है--

उस पानी में दो लोग नहा रहे हैं।

फूलों के अलग अलग प्रकार के पौधे लगे हुए हैं।

और पर्दो के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है साइड में दीवार पे शीशे लगे हुए हैं।

आस पास बहोत बड़े बड़े पहा अ पत्थर पड़े हुए हैं।

और सामने टेबल पर भी कुछ आदमी बैठे हुए है और एक आदमी हाथ में फोन लेकर--

हॉल दिख रहा है और उस हॉल में टेबल रखी हुई है सोफे रखा है।

इस चित्र में सामने हमें बहोत सारी सीढ़ियां बनी हुई दिख रही है।

जिसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है और आगे दुकान के सामने--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

घर बना हुआ दिख रहा है जिसमे ताला लगा हुआ है।

इस चित्र में सामने हमें बहोत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई दिख रही हैं और आगे--

इस चित्र में हमें कमरा दिख रहा है।

और कमरे में स्लेटी कलर के परदे लगे हुए हैं।

इस चित्र में सामने हमें एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जिसमें बहोत सारी लाइटें जल रही हैं।

एक बहोत बड़ा पेड़ दिख रहा है।

इस चित्र में सामने हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग --

बनी हुई दिख रही है और उस बिल्डिंग के सामने--